यह एक चर्च है एक गार्डन के सामने बना हुआ है।

यह एक चर्च है जो तीन मंज़िला बिल्डिंग से बना हुआ है और काफी खिड़किये बनी हुई है।

यह एक मन्दिर है जो काफी पेंट किया गया है बाहर लोहे का एक लाल कलर का गेट है और उपर गनपती बप्पा कि मूर्ति बनी हुयी है।

यह एक मॉल है जो काफी लंबा है और उस में काम चल रहा है।

और दुकान है के अंदर ए.टी.एम. मशीन दी हुवी है कांच के फ्रेम भी लगे हुए हैं ।

यह एक दुकान है जहाँ काफी सामान रखा हुआ है | फूल और डिजाइनिंग के समान रखे हुए हैं ।

यह एक दुकान है तो बाहर एक पोस्टर लगा हुआ है।